बिल्डिंग की ओर एक बोरी डली हुई है जो दिखाई दे रही है।

और एक मशीन दिखाई दे रही जो रखी हुई है। एक टेबल दिखाई दे रही जिस पर रखकर वह कपड़े पर प्रेस कर रहा है और बलूंस दिख रहे हैं।

यहाँ पर पन्नी में पैक कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं कुछ पन कुछ पैन्ट रखे हुए हैं जो दिख रहे हैं रस्सी से बँधे हुए हैं यह स्लैब के ऊपर रखे हूए हैं स्लैब के ऊपर से --

यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है वैह दिखाई दे रही है। कार के उस साइड कुछ झाड़ियां बनी है झाड़ियां के उस तरफ गाड़ियां खड़ी हुई है।

कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं वह दिखाई दे रहे हैं। यह सर्किट दिखाई दे रही है जोकि लिसी हुई है।

मछलियां कटी हुई डली हैं कुछ साबुत डली हुई हैं।

यहाँ पर एक छत पर लोहा बिछा हुआ है सेनटींग लगी हुई है।

छड़े दिख रही हैं। एक डब्बा दिख रहा है। कुछ कागज की पुष्टि दिखाई दे रही है।

टमाटर दिख रहें हैं और मिर्ची दिख रहीं हैं।

यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं जो दिखायी दे रहे हैं कपड़े पतलू के यहाँ रखे हुए हैं जो दिख रहे हैं लाइटे लेसी हुई हैं।